तस्वीर में एक नीले रंग का बोर्ड देखा जा सकता है जिसमे सफेद अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है।

इसका रंग हल्का ऑरेंज पीला तथा गुलाबी नजर आ रहा है।

संस्था का नाम ऊपर लाल अक्षरों में लिखा हुआ है।

दीवारों का रंग सफेद नजर आ रहा है तथा एक बालक खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

धार्मिक स्थल की दीवारों का रंग सफेद तथा उसेपे कुछ डिजाइन बनाया गया है।

पार्क चारों ओर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं तथा तस्वीर में उपस्थित रोशनी बताती है कि यह तस्वीर दिन में ली गई है।

तस्वीर में उजाला है जिससे पता चलता है कि यह तस्वीर दिन में ली गई है।

पहाड़ों पर छोटे छोटे झाड़ियां और घास नजर आ रही है।

यह तस्वीर क्लीनिक की है जिसका नाम चौहान क्लिनिक है।